उ लोग उसमे जाते है और ये कोई हॉस्पिटल का आगे का पोरशन लग रहा है देखने में।

यहां प्लंबर है और ये प्लंबर पेप का काम काम कर रहा है। प्लंबर कोई मॉल या कोई बड़ा अपार्टमेंट में काम कर रहा है। मॉल अ प्लंबर पूरा सेफ्टी के साथ काम कर रहा है।

तो फ्लैग होइस्टिंग दिख रहा है और ये कोई हवाई अड्डा का फोटो है और यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग हो रहा है एक बच्चा वहाँ पर है।

फोटो कोई कोई हॉस्पिटल का है यहाँ पे बहोत सारे बहोत सारे अ चेयर्स लगे हुए हैं बैठने के लिए बहोत अ साफ-सुथरा हॉस्पिटल लग रहा है।

पार्क के बीच में एक बच्चो के लिए झुलउआ लगा हुआ है झुलउआ अ-पीले रंग का है और यहा पर बच्चे भी आयेंगे और झुलउआ झूलवा झूलेंगे और अच्छा से झूलेंगे ।

मेरीगोल्ड चमेली लोटस लिली सनफ्लॉवर बोहोत सारे फूल --